इस तस्वीर में आप एक बड़े से माले को देख सकते है जिसके अंदर सफ़ेद तथा लाल रंग के फूलो का --

इस तस्वीर में आप एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को देख सकते है जिसके ऊपर बहोत सारे बैनर लगे हुए है।

जिसके अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे निकल चुके हैं तथा यहाँ बहुत सारे वृक्ष भी दिखाई पड़ रहे हैं इसमें एक ताड़ का वृक्ष भी है।

जिसके ऊपर बहुत सारे गुब्बारों से सजाया गया है तथा नीचे टेबल और कुर्सी भी दिखाई पड़ रही है जहां कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इमारत दिखाई गई है जिसके आसपास बहुत सारे लोग रोड पे चलते हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में आप कुछ मजदूरों को एक बिल्डिंग की छत पे काम करते हुए देख सकते है।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे पार्क में खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ बहुत सारी चट्टानें भी नजर आ रही हैं | नजदीक में एक जलाशय भी मौजूद है तथा यहाँ छोटे मोठे हरे भरे पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं |